यहा पे बहुत दूर दूर तक बहुत सारे यहा पे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और यहा पे बहुत सारे बाइक यहा पे पार्क किया हुआ है और यहा पे बहुत सुंदर ये जगह दिखाई दे रही है।

ये कोई ढो अह डी एस पी सोडा अँड कॉफी शॉप है यहा पे बहोत सारे पोस्टर लगे हुए है यहा पे एक टेबल रखा हुआ है जहा पे तीन लड़के बैठके--

अह कुछ खा रहे है और सभी ने यहा पे ब्लॅक कलर के जैकेट पहने है और ये टेबल का रंग यहां पे लाल है और चेयर का भी रंग लाल है।

ये कोई रिज़ॉर्ट लग रहा है जहा पे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिख रहे है और दूसरी और यहा पे बहुत सारे जगह पे बैठने की जगह है और ये जगह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे है यहा पे दूर-दूर मे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और यहा पे--

ये कोई चिड़िया घर का यहा पे तस्वीर दिखाई दे रहा है। यहा पे बहुत सारे नेट लगे हुए है। यहा पे एक पोस्टर लगा हुआ है और पीछे मे यहा पे अ बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है बहुत लंबे लंबे और यहा--

जहा पे बहुत सारे आदमी यहा पे दिखाई दे रहे है एक रेड़ कलर का डस्ट्बिन दिखाई दे रहा है यह दुकान का रंग भी यहा पे रेड़ और व्हाइट है बाहर मे पोस्टर लगा हुआ है।

यहाँ पे एक खेत दिखाई दे रहा है खेत के बीच में यहाँ पे एक घर बना हुआ है।

और वो घर का रंग यहाँ पे अ ग्रीन कलर का है और यहाँ पे बहुत सारे छोटी छोटी पत्तियां हुई है घास हुआ है और यह घर का यहां पे कवर किया हुआ है यह यहाँ पे अ दूर में बहुत ब बड़े बड़े पेड़ है।

अ ये कोई फैक्ट्री दिखाई दे रही है। जहा पे एक बहुत बड़ी सी मशीन लगी हुई है और यहा पे लाइट लगे हुए है यहा पे दो वर्कर्स यहा पे काम कर रहे है।

यह एक दुकान है दुकान में यह एक ड्राई क्लीनिंग का दुकान है बाहर में यहाँ पे छोटे-छोटे पेड़ पौधे रखे हुए रखे हुए हैं।

और यहा पे रखी है और यहा पर दो-तीन आदमी अ खड़े है और यह एक आदमी मछली को अ पकड़-पकड़ के दूसरे डब्बे पे डाल रहा है।